एक पुरूष अंदर खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है।

और एक गेट दिख रहा है कांच का और ऑफिस टाइप का दिख रहा है।

हेलमेट रखा है। ब्लैक कलर की गाड़ी है। उसकी सीट पर हेलमेट रखा है।

और दो लोग टंकी के पास खड़े हैं। दो टंकी रखी हुई हैं।

और डोकरेशन हो रही है। लाइट जल रही है।

और इसके अंदर ऐटीएम रखा हुआ है ऐटीएम मशीन ।

गुब्बारे लगे हैं। ग्रीन व्हाइट ऑरेंज और दो गाड़ी खड़ी हुई हैं बाहर ब्लैक रेड कलर की।

ये एक पवित्र सुन्दर डेकोरेशन हो रही है।

दो ग्रीन दिख रहे है एक रेड कलर का दिख रहा है ऑटो --

पूरा ब्लैक है। बोहोत सारी लाइट जल रही है।

कुछ पोस्टर भी लगे हुए है बैनर --

यहाँ पर दो लड़कियाॅं खड़ी हुई हैं। सेल्फी ले रही है। एक हाथ में मोबाइल है।

और बोहोत सारे गेट हैं बड़े-बड़े। दो दिख रहे हैं।